महाविद्यालय जबलपुर लिखा है दिखाई दे रहा है।

इस पर नगर निगम गोरखपुर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

चाय का कप दिखाई दे रहा है। बोटल्स दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में एक चर्च दिखाई दे रहा है।

कोठी दिखाई दे रही हैं दो।

वॉल दिखाई दे रही है पिलर्स दिखाई दे रहे हैं।

दिखाई दे रही है।

जो रेड और ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है।

फोटो में हमें गार्डेन दिखाई दे रहा है।